अह हैंड वॉश वगैरह सब मिल रहा है।

झोपड़ी के बगल में बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं यहां पूरा हरियाली भरी हुई है।